और इसमें बहोत सारी टेबल और कुर्सियां भी लगी हुई हैं।

वो आपने एक हाथ पे अपनी पूरी शरीर को खड़ा करके रखा है पीछे बहोत सारे बच्चे खेल भी रहे हैं।